ट्रक भी खड़ा हुआ है इंसान भी खड़े हैं किराना दुकान भी खुली है सीढ़ी भी लगी हुई है लोहे भी दिख रहे हैं पाया--

कुछ जूता भी दिखते हैं कुछ इंसान भी दिखते हैं कुछ पंखा भी दिखते हैं कांच भी लगा हुआ दिखता है कुछ चेयड़े भी दिखती हैं कुछ--

कुछ मछली भी दिख रही है कुछ पानी भी दिख रहा है कुछ डोरी भी दिख रही है कुछ मच्छी कटी हुई भी दिख रही है कुछ--

लिखा भी हुआ दिख रहा है कुछ मछली भी डरी हुई दिख रही--